नमस्कार charts in gchemtable के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
elemental charts और
custom charts कैसे बनायें
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ:
ubuntu लिनक्स os version 1204
gchempaint version 01210
gchemtable version 01210
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आप एलीमेन्ट्स की पिरिऑडिक टेबल और gchempaint के साथ परिचित होने चाहिए
gchempaint पर सम्बंधित tutorials के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ
अब एक नयी gchemtable window खोलते हैं
dash home पर click करें
प्रदर्शित search bar में type करें gchemtable
periodic table of the elements icon पर click करें
view menu पर click करें elements charts select करें
प्रदर्शित विकल्पों की सूची के साथ एक menu खुलता है
electronegativity पर click करें
pauling electronegativity बनाम atomic number z का chart प्रदर्शित होता है
chart में उच्चतम electronegativity value 4 है
मैं electronegativity chart को बंद करुँगी
इसी तरह view menu में भिन्न charts उपलब्ध हैं
element charts
मैं melting temperature chart select करुँगी
melting point बनाम atomic number z का chart प्रदर्शित होता है
इस chart में carbon का melting point उच्चतम है
मैं melting point chart को बंद करुँगी
अब सीखते हैं custom chart कैसे बनायें
view पर जाएँ element chart select करें और custom पर click करें
customize chart window और gchemtable graph window screen पर दिखती है
customize chart window बायीं तरह graph hierarchy tree और
दायीं तरफ graph preview रखती है
graph hierarchy tree वर्तमान graph components और उनकी हाइरार्की दर्शाती है
panel में दिए buttons उपयोग करके हाइरार्की को संशोधित किया जा सकता है
graph preview graph में scaled किये हुए संशोधन का version दिखाता है
graph hierarchy tree में आप graph और chart1 1 देख सकते हैं
default रूप से graph सलेक्ट किया हुआ है
अब नीचे panel पर जाते हैं
यहाँ स्टाइल और theme नामक दो tabs हैं
default रूप से स्टाइल टैब सलेक्ट की हुई है
यहाँ हमारे पास दो शीर्षक हैं: outline और fill
आउटलाइन शीर्षक style color और size नामक 3 ड्राप डाउन्स रखता है
ये drop डाउन्स graph की outline properties को बदलने में मदद करते हैं
style drop down पर click करें और प्रदर्शित कोई भी line styles select करें
उदाहरण स्वरुपमैं long dash long dash select करुँगी
सारे उपलब्ध colours देखने के लिए color drop down arrow पर click करें
मैं green colour select करुँगी
size scroller arrow पर click करें और size 30 pts points तक बढ़ाएं
सारे बदलाव graph preview area में देखे जा सकते हैं
आगे fill को देखते हैं
fill में हम type dropdown button देख सकते हैं
type dropdown button पर click करें और pattern select करें
pattern की विशेषतायें नीचे प्रदर्शित होती हैं
ये pattern foreground और background सम्मिलित करता है
प्रत्येक विशेषता एक drop down रखती है जो विकल्प दर्शाता है जिसमें से आप एक select कर सकते हैं
अपनी पसंद का pattern सलेक्ट करने के लिए
pattern ड्रापडाउन पर क्लिक करें
orange color select करने के लिए foreground dropdown पर click करें
black color select करने के लिए background dropdown पर click करें
graph preview area में ये सारे बदलाव देखें
आप अपने आप अपना theme टैब विकल्प जाँच सकते हैं
अब graph hierarchy tree में chart1 1 select करें
add button पर click करें
विकल्प सूची से title to chart1 select करें
नीचे tabs का एक नया set खुलता है
default रूप से data टैब सलेक्ट किया हुआ है
text क्षेत्र में chart का टाइटल type करें
mass atomic mass – fusion temperature type करुँगी
font पर click करें
यहाँ आप font type font स्टाइल font size और font color बदल सकते हैं
मैं font size को 14 तक बढ़ाउंगी और font color को maroon से बदलूंगी
आगे text टैब पर click करते हैं
यहाँ आप text की orientation बदल सकते हैं
यह दो तरह से हो सकता है
1 पहला सीधे प्रीव्यू area पर क्लिक करके
2 दूसरा scroller उपयोग करके angle क्षेत्र बदलके
position टैब पर click करें
मैं default values को वैसा ही छोड़ दूँगी जैसी वो हैं
graph hierarchy tree में वापस जाएँ और
chart1 1 पर click करें
नीचे panel में तीन tabs
style position और plot area दिखती हैं
default रूप से स्टाइल टैब सलेक्ट की हुई है
अब fill पर जाते हैं
type dropdown में unicolor gradient select करें
direction dropdown select करें और
अपनी पसंद की direction select करें
end drop down select करें और अपनी पसंद का colour select करें
ग्रेडिएंट की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए brightness स्लाइडर को खींचें
position और plot area टैब्स में विकल्पों को अपने आप जाँचें
add add button पर click करें
plot to chart1 select करें
xy bubble coloredxy और dropbar नामक अनेक प्रकार के चार्ट्स के साथ एक सबमेन्यू खुलता है
प्रत्येक प्रकार का chart अनेक chart विकल्प रखता है
अब xy और xy lines chart विकल्प चुनें
नीचे tabs का एक नया विकल्प खुलता है default रूप से स्टाइल टैब सलेक्ट की हुई है
interpolation पर जाएँ
type scroller पर click करें और bezier cubic spline select करें
fill पर जाएँ type scroller में bicolor gradient select करें
data टैब पर click करें chart का name
atomicmass vs fusion temperature टाइप करें
x: mass xaxis पर atomic mass select करुँगी
y: मैं yaxis पर fusion temprature select करुँगी
markers टैब पर click करें
chart पर points चिन्हित करने के लिए markers उपयोग किये जाते हैं
marker शीर्षक में हमारे पास
shape fill outline और size हैं
अब shape में circle select करें
fill color को brown select करें और
अन्य को default ही रहने दें
अब apply button पर click करते हैं
आवश्यक chart gchemtable graph विंडो पर
प्रदर्शित होता है
अब इस chart को image की तरह सेव करते हैं
सबसे पहले gchemtable graph window पर click करें
file select करें और save as image विकल्प पर click करें
save as image dialog box खुलता है
file type में ps document select करें
file का name अपनी पसंद का type करें
मैं mycustomchart type करुँगी
मैं अपनी फाइल सेव करने के लिए location में desktop select करूंगी
save button पर click करें
यहाँ here सेव किया हुआ document है
file पर rightclick करें और
open with document viewer विकल्प चुनें
यहाँ here graph है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
निम्न के elemental charts
2 melting point और
custom charts कैसे बनायें
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
निम्न जाँचें 1 भिन्न element charts
2 अन्य xy chart types
3 bubble coloredxy और dropbar chart types और
4 charts को svg और pdf file formats में svg करें
इस url पर उपलब्ध video देखें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
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद